पिक्चर में एक रूम दिख रहा है रस्ट क्रीमी से कलर का पेंट है और एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा है रेड कलर से और एम पायल लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक खंडर दिख रहा है और ईटें दिख रही है पिंक कलर की ऑरेंज और स्लेटी कलर की और कुछ वृक्ष--

-- दिख रहे हैं उनकी पत्तियाँ दिख रही है और यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है वह भी सिलेटी कलर की उसके अंदर एक पार्क दिख रहा है।

घर मे एक बिल्डिंग दिख रही है जिसपे व्हाइट कलर का बोर्ड है रेड कलर से श्वेता मेडिको लिखा हुआ है और एक बिजली का खंभा--